नमस्कार लाजिकल ऑपरेटर्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है यह काफी संक्षिप्त ट्यूटोरियल है किन्तु मैं अभी इसे इसी प्रकार से रखूँगा
मैं एक if statementस्टेट्मेन्ट का एक उदाहरण फिर से इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अभी तक मुझे यही मिला है
लाजिकल ऑपरेटर क्या है चलिए थोडासा तर्क यानि लोजिक जोड़ते हैं और कहते हैं यह and या or ऑपरेटर है
अब यदि मैं अपने if statement स्टेट्मेन्ट के लिए अपना बुनियादी नक्शा बनाना शुरू करता हूँ तब मुझे आपको यह दिखाने पर काम करना होगा कि आप इनके साथ क्या कर सकते हैं
इससे पहले हमारे पास एक उदाहरण है जैसे कि 1 1 से बड़ा है जो अभी false देगा
चलिए केवल इसे जाँचे यह देखने के लिए कि हम कहाँ हैंसही अतः यह false है
अब क्या होगा यदि मैं बोलूँ कि if 1 is greater than 1 or 1 equals 1if 1 1 से बड़ा है या 1 1 के बराबर है
अब हम यह इस तरह or नहीं लिख रहे हैं हम इसको दो क्षैतिज रेखाओं या दो पाइप से लिख रहे हैं
इसके बारे में काफी सुनिश्चित तो नहीं है किन्तु यदि मैं अपने कीबोर्ड को जानता हूँ यह शिफ्ट बटन के बाद में होगा 2 क्षैतिज रेखाएं और इसका मतलब or है
अतःयदि हम इसे कंपाइल करें आप क्या सोचते हैं उत्तर क्या होगा
अब चलिए इसको एक बार रन करते हैं if 1 is greater than 1 यदि 1 1 से बड़ा है false और इसलिए हमने लिखा है false or 1 is equal to 11 1 के बराबर है
हम जानते हैं कि 1 equals to 1 true है अतः यहाँ हम कह रहे हैं किor1 equals to 1 not and क्योंकि यदि हम and कहते हैं तब दोनों को true होना चाहिए
या इनमें से कोई भी true हो सकता है
आउटपुट अतः आशापूर्वक हमें true मिलेगा
ठीक है तो यह or है
यह मूलतः आपको दो तुलना करने कि अनुमति देता है इनको आपके if statementस्टेटमेंट में दर्शाइए और यदि इनमें से कोई भी true है तो यह एक either ऑपरेटर के समान है
इनमें से कोई भी true होगा आपको true मिलेगा
and ऑपरेटर अलग विषय है
and को यह निष्पादित करने के लिए इन दोनों के true होने कि आवश्यकता होती है
अतः हमें यहाँ false मिला है क्योंकि 1 1 से बड़ा नहीं है
हम अपने कम्पेरिज़न ऑपरेटर्स पर वापस जाते हैं और हम कहेंगे 1 is greater than or equal to 1 and 1 equal 1 if 1 1 से बड़ा या बराबर है and1 1 के बराबर है यहाँ हमें true मिलेगा
अतः अब मैं बस यह सोच सकता हूँ कि इसमें कुछ वेरिएबल्स डाल दूँ इसे जाँचने के लिए
लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अन्य ट्यूटोरियल्स का पालन करके आपका अब तक वेरिएबल्स पर पूर्ण नियंत्रण हो गया होगा
अतः यह दो लाजिकल ऑपरेटर्स हैं
आप इन्हें काफी उपयोगी पायेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप उदाहरण कहना चाहेंयह काफी आदर्श उदाहरण है आप इसे मेरे कोई एक प्रोजेक्ट में पायेंगे
यह एक लॉगिन प्रारूप है मानिए कि प्रयोगकर्ता वेबसाइट में लॉगिन करना चाहता है
संभवतः आपने वेबसाइट में पहले भी लॉगिन किया होगा और उसने आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा होगा अब कीवर्ड्स वहाँ पर हैं
हमें जाँचना की आवश्यकता है यदि उपयोगकर्ता ने यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज किया है
यदि उन्होंने नहीं किया है तब यूजरनेम कि तुलना पासवर्ड से करने का कोई मतलब नहीं है
अतः हम कह सकते हैं उदाहरणस्वरूप if username and password
वास्तव में चलिए इसे करते हैं मैं कहूँगा username is equal to बराबर है alex के और password is equal to abc
अब मैं इसे स्थान पर रखूँगा मैं कह सकता हूँ यूजरनेम और पासवर्ड
इस समय यह true बोलेगा
मैं इसे बदलूँगा मैं बोलूंगा ok या you forgot to fill out a fieldआप फील्ड को भरना भूल गए हैं क्योंकि अंततः यहाँ पर html फील्ड्स होंगे
यह ठीक होने जा रहा है क्योंकि हमें दोनों मान मिल गये हैं
अतः चलिए कोशिश करते हैं हाँ यह ok कह रहा है
अब क्या होगा यदि मैं वहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना भूल जाता हूँ इस समय वहाँ पर कुछ भी नहीं है कोई जगह नहीं चलिए इससे छुटकारा पाते हैं
you forgot to fill out a fieldआप फील्ड को भरना भूल गए हैं
अतः यदि आप सोच रहे हैं कि यह उपयोगकर्ता की तरफ से आ रहा है अतः यह ऐसे जमा हो गया कि जैसे आपने अपना यूजरनेम और पासवर्ड टाइप किया
हम कह रहे हैं यूजरनेम और पासवर्ड मूलतः यूजरनेम खुद से ही true है क्योंकि यह मौजूद है
यदि आपने उसे अंदर रखा वह स्वीकार्य होगा वह true होगा
हम केवल जाँचेंगे
अतः क्योंकि हमें यूजरनेम और पासवर्ड मिल चुका है यह सही है
किन्तु or के लिए सचमुच में इसके कोई मायने नहीं है और आप सोच सकते हैं क्या होगा
अतः इस समय यह true के बराबर होगा क्योंकि हमें दोनों मान मिल चुके हैं अतः यह ok है
अब यदि मैं इन दोनों के साथ जाऊँ और इस पर कोशिश करूँ
यदि यूजरनेम मौजूद है अतः यदि यूजरनेम true है
इस समय यहाँ पर कोई मान नहीं हैं अतः यह false है
or the password is true अर्थात मान मौजूद है; जिस समय यह मौजूद नहीं हैतो यह false है
अतः हम कहने जा रहे हैं you forgot to fill out a fieldआप फील्ड का भरना भूल गए हैं
मैं यहाँ बस nothing लिखूंगा क्योंकि इस समय इसका मतलब कुछ नहीं है
अतः रिफ्रेश करें और हमें nothing मिला
अतः आप देख रहे है कि पहले से ही मैं विवरण दे चुका हूँ कि यह प्रतिदिन के php प्रयोग में कितने उपयोगी हो सकते हैं
उदाहरणस्वरूप प्रारूप कोई भी भर सकता है आप इसके लिए कई दूसरे प्रयोगकर्ता पाएँगे
लेकिन इतना ही
दो ऑपरेटर्स जो कि लाजिकल ऑपरेटर्स हैं
बस इन्हें प्रयास करिए और देखिये आप इनसे क्या कर सकते हैं
मैं इन्हें निश्चित ही अपने किसी एक प्रोजेक्ट में शीघ्र ही इस्तेमाल करूँगा
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद